इंस्टा म्यूजिक सिस्टम लिखा हुआ है और यह इसका नाम उजला कलर है इसको पोस्टर से चिपकाया गया है।

एक बड़ा सा कंपनी है जिसमें बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है और बहुत सारा लाइट सा लगा हुआ है।

यहां पे एक रिक्शा लगा हुआ एक आदमी खड़ा है यहां पे पिकअप लगा हुआ है यहां पे दुकान सब दिखाई दे रहा है घर स--

यहां पे पेड़ है यहां पे हरियाली थोड़ा देर मिछाया हुआ है यहां पे कार है यहां पे भी कार है यहां भी कार है यहां पे बहुत बड़ा लाइन का पोल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक टावर दिखाई दे रहा है तार भी दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल है उसके आगे काउंटर लगा हुआ है जिसमें मिठाई सब धरा हुआ है एक आदमी उस पर लिखा हुआ है दो आदमी जा रहे हैं दो तीन एक औरत एक बच्चे के लेकर खड़ा हुआ हैं।

सोफा वाला कुर्सी लगा हुआ है यह एक बॉक्स के बॉक्स रखा हुआ है जिसपे तीन चार डिब्बा रखा हुआ है।

और यहां पे खिड़की दिखाई दे रहा है बहुत सारे सामानस रखा हुआ है यहां पे पर्दा दिखाई दे रहा है इस साइड --

एक पोस्टर पोस्टर टंगा हुआ है दो तीन आदमी बाजार के लिए और महिला है सभी झोला लिए इधर तक रही है आदमी से सब्जी बेच रहा है।

यहां पे बहुत सारा सामानस रखा गया है बिकने वाला यहां पर लाल कलर का काउंटर दिखाई दे रहा है।

यह बहुत बड़ा सा घर है जिसमें स्विमिंग पूल बीच में दिया गया है। काठे काठे पेड़ पौधा सा दिखाई दे रहा है।

रंगा गया है यहां पे टाइल्स भी लगाया गया है घर की गेट पे।

यहां पे बहोत सारे पहाड़ सब दिखाई दे रहे है और हरियाली छाई हुई है। ये एक--

विछेद रंग दिखाई दे रहा है थोड़ा-थोड़ा हरियाली छाई हुई है।

और ये घर पीला कलर से है औ ये यहां पे लगा हुआ है पीछे गाछी है अ उ आसमान व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा हरियाली छाई हुई है झील झरना से लग रहा है आसमान का रंग पूरा भूरा दिखाई दे रहा है पहाड़ से छोटे-छोटे सब दिखाई दे रहे हैं यहां पे झरना झील झरना सब दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुर्सी और सोफा भी लगा हुआ है बीच में एक कांच का टेबल रखा हुआ है इस साइड भी--

कुछ टेबल रखा हुआ है कुर्सी रखा हुआ है और यहां पे पोस्टर जैसे तीन चार चिपकाया गया है।

ये कपड़े पीला कलर का वह पहनी हुई है पीछे कपड़ा का दुकान हैं।

यह एक कॉलेज है जिसके बाहर बहुत सारे स्टूडेंट बैग लेकर खड़ा है।

बहोत सारे मोटरसाइकिल स्कूटर सब हैं यहां पे कॉलेज के गया है।

यहां पे कुछ लिखा भी गया है पोस्टर भी लगा है ऊपर--

यहां पे गुलाब का फूल है रोज का फूल है रेड कलर बहुत दिखाई दे रहा है थोड़ा-थोड़ा हरा पीछे दिखाई दे रहा है यहां पे थोड़ा पीला कलर का भी फूल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है। दुकान है यहां पे बुक सब दिखाई बिका रहा है। आरती बुक सेंटर यहां पे लिखा है और थोड़ा उ ऊपर--